यह एक दुकान है इसमें कुछ मशीने दिखाई दे रही है।

कुछ आदमी नहाते हुए दिख रहे हैं और कुछ पेड़ दिख रहे हैं।

लकड़ी की छत दिखाई दे रही है।

यहां पर मोटे मोटे पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

दो पुलिस वाले दिखाई दे रहे हैं काफी सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर मुझे काफी सारे आदमी दिखाई दे रहे हैं।

डस्टबिन दिखाई दे रहा है और एक बहुत सुंदर दुकान दिखाई दे रही है।

और इसके ऊपर पॉलिथीन दिखाई दे रही।

सामने एक काउंटर दिखाई दे रहा है।

उन पर छोटे से पैन्ट दिखाई दे रहे हैं।

कुछ घास दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नाई की दुकान है।